एक अंदर में एक आदमी है ऊपर दो बड़ा बी पिलर रखा हुआ हैं जिसका कलर ग्रे में है।

एक पिचकारी भी रखी हुई है।

एक बॉक्स भी रखा हुआ है फौजी कलर का।

पीछे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे है लाल कपड़ा पहन के।

सामने एक टेंपू जा रहा है।

उधर में लाल कलर एक का स्टैंड रखा हुआ है।

बिल्डिंग का कलर येलो और रेड में है।

पीछे एक बेड है बेड का कलर हरा है।

सामने लोहा का एक खंभा भी गढ़ा हुआ है एक बोरा रखा हुआ है जिसका कलर पिंक है।

पर खंबा है जिसमे तार जा रहा है।

कागज का कलर व्हाइट है एक का रेड है एक का ग्रीन है एक का येलो है।

टेबुल के बगल मे ब्लैक कलर का कुछ रखा हुआ है उसके बगल में बोरा रखा हुआ है।

ऊपर दीवाल का कलर वाईट है।

सब ने होली खेला हुआ है।

एक गाड़ी के ऊपर हेलमेट टंगा हुआ है जहाँ बहुत सारे आदमी खड़े है एक बच्चा भी है।

एक ने ब्लैक और पिक में पहना हुआ है उसके पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक नदी का दृश्य है जहां पूल है पूल का रेलिंग व्हाइट कलर का है और नीचे येलो और ब्लैक में है।

बगल में बहुत सारे घर बने हुए हैं ऊपर आसमान का कलर ब्लू और वाइट में है।

यहां बिल्डिंग के बाहर में एक बालकनी है उसके ऊपर शेड दिया हुआ है और एच हरा कलर का।

एक ट्रैक्टर भी है जिसका कलर रेड है और डाले का कलर हरा और ब्लू मे है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है जहां पीछे एक बिल्डिंग है।

सामने वाले बिल्डिंग का कलर व्हाइट और ऑरेंज में है।

यहां बहुत सारे आदमी है।